वहां बाई तरफ एक कच्ची झोपड़ी दिखाई दे रही है।

सामने पिले रंग की दो इमारते दिख रही है।

छवि में एक स्टेडियम का दृश्य दिख रहा है।

प्रवेश द्वार के सामने कुछ कारें खड़ी दिख रही हैं।

कार्यालय के बाहर कुछ मोटरसाइकिल पार्क किए गए दिख रहे हैं।

कार्यालय के सामने तीन बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

तस्वीर में रात महोत्सव का दृश्य दिख रहा है।

इस छवि में एक महज़िद का चित्र दिख रहा है।

के फर्श पर सफेद टाइल्स बिछी हुई है।

हाइवे के चारों ओर बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहे है।

इस तस्वीर में एक रेलवे फुट ब्रिज दिख रहा है।

सड़क और इमारत के आस पास लोग चलते हुए दिख रहे हैं।

इस छवि में एक लाइब्रेरी का दृश्य दिख रहा है।

प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट लगे दिख रहे हैं।

इस छवि में दो मनुष्य एक हाथी को नहां रहे हैं।

छवि में एक सरकारी कार्यालय दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी खाद पेड़ पौधे और झाड़ियां नजर आ रही है।

प्रवेश द्वारा के आस पास कुछ लोग दिख रहे हैं।